और हरी-भरी घास भी दिखाई दे रही कुछ पत्थर भी डले हुए है और यहाँ पर छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और पीछे की तरफ एक बहुत ऊंचा पेड़ नजर आ रहा है।

जो की सफेद कलर का गेट है और उस गेट के छोटे-छोटे भी नजर आ रहे है।

और कुछ तार से बनी हुई खिड़ बो झरिया भी दिखाई दे रही है और एक बहोत बड़ा पेड़ भी नजर आ रहा है।

और सफेद कलर का पाइप भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ बहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जो की हरा-भरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक छोटी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊ साइड से कुछ पेड़ लगे हुए है जो की बहोत बड़े दिखाई दे रहे है।